ये एक रात की तस्वीर दिखाई दे रही है।

सामने की और एक जिम की बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है यहां पर बाइक पे एक लड़का कुछ ले जाता हुआ नजर आ रहा है।

बॉयस की टी शर्ट टंगी हुई है और तीन छोटे बड़े साइज के रेड कलर के है सूटकेस भी टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहोत सारी टेबले और गद्दे वाली कुर्सियां भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

जहां पर बाहर की ओर कुछ आटे के कट्टे कुछ तेल के पीपे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

किसी के पास में एक ईमित्र की भी दुकान दिखाई दे रही है और बाहर की ओर एक बाइक भी खड़ी हुई नजर आ रही है।

ये एक गार्डन की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बीचों-बीच एक बड़ा सा तालाब बना हुआ दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है यहां पर पेट्रोल पंप पे पेड़ पौधों पर भी लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही है।

उसपे उसका एड्रेस भी लिखा हुआ है टाइमिंग भी लिखी हुई है और मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यह किसी दुकान के साइड की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर दो बोर्ड लगे हुए हैं।